ये एक बगान जैसा लग रहा है येह किसी चीज़ का पौधा लगा हुआ है कुछ-कुछ किसान लोग खेती किये है।

ये एक क्लास रूम है क्लास रूम में नोटिस बोर्ड में कुछ टंगा हुआ है फॉर --

सिर में चंद्रमा है यहाँ बहोत बहु सारे लोग दर्शन के लिए आए हुए है।

सींग को सिर में लगाए हुए है महिलाएं भी कुछ पकड़ी हुई है लाल रंग का साड़ी पहेन के डांस कर रही है।

और ये लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे जैसे लग रहा है लाइट जल रहा है पंखा दिखाई दे रहा है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।

साबुन मैगी शैम्पू --

ये एक नदीम ऑटो गैरेज एंड हीरो एलेक्ट्रीसिन लिखा हुआ है हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों की रिपेयरींग व वायरिंग उचित मूल्य पर की जाती है एवं--

वियर लेडिस वियर एवं दुल्हन की ड्रेस उपलब्ध है थोक एवं फूटकर विक्रेता पता मिशन रोड बलरामपुर लिखा हुआ है इसमें बहोत सारे कपड़े टंगे हुए है।

महलो में अधिकतर भूत मूवी बनती है यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है इसको रात में देखने से डरावना भी लगता है बहोत बड़ा है।